और इस बिल्डिंग का कलर व्हाइट और क्रीम है वहां पर कोई भी नहीं है।

सैलून है जिसके आगे ये छे लोग खुद की फोटो खींच रहे हैं।

और एक बोर्ड भी है जिस पे लिखा है हेयर एक्सपर्ट लॉरिअल ।

और वहां पे एक नाव भी है और दूर दूर हर साइड से पहाड़ ही पहाड़।

ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनके यूनिफॉर्म का कलर ब्लू और ग्रे --

ये एक खेत है जिसमें एक बड़े से पेड़ के नीचे एक ट्रैक्टर ब्लू कलर का रखा गया है।

और साइड में एक आदमी जिसके कमरों का कलर येलो है।

और इनके पीछे कुछ डेकोरेशन भी की गई है।

जिसमे कुछ बना रहे है जिसमे बहुत सारा पानी भी है थो--

इसमें पत्थर वगैरह है और बिलडोजर भी है।

इसलिए बहोत बड़ी बिल्डिंग है इस में एक बोर्ड --

वहां पे एक दरवाजा है जिसपे ये नंबर दिया गया है।

इसमें आलू भी है इसमें बोहोत सारे बर्तन है जोकि फेले हुए है।

एक हॉल है जो स्कूल बच्चों का है।

वहां पे स्कूल बच्चे हैं जो दो एक लड़का और एक लड़की बॉक्सिंग की कंपटीशन में उतरे हैं।

और वहां पे पेपर्स वगैरह भी है कंप्यूटर भी है रेडियो भी है बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं।

इस शॉप पो पीछे लिख के है फीयर द बियर्ड ।

जिनको सारों को सेम यूनिफॉर्म लगा के है।